पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीज़ल भरी जाती है।

कमरा देखने को मिल रहा है।

इस कमरे की छत पर लाइट लगी हुई है।

हमें इस चित्र में एक मकान देखने को मिल रहा है।

गाड़ी का रंग काला है।

गाड़ी बहुत ही सुंदर है।

गाड़ी के पीछे एक पार्क भी है।

हमें इस चित्र में एक गाड़ी देखने को मिल रही है।

इमारत के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी है।

कमरे में दो सोफे लगे हुए है।

कमरा बहुत ही सुंदर लग रहा है।

एल_इ_डी लाइट्स लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर में --

और एक महिला उनका आशीर्वाद ले रही है।

हमें इस तस्वीर में एक काले रंग का प्लेट देखने को मिल रहा है।

एक पार्क देखने को मिल रहा है।

पार्क के बाहर कुछ लोग खड़े हैं।

और एक कुत्ता भी चल रहा है।

कमरे की छत पर एक एल_ई_डी लाइट लगी हुई है।

हमें इस तस्वीर में एक इमारत देखने को मिल रही है।

कमरे की छत पर एल_ई_डी लाइट्स लगी हुई है।

यह एक स्टूडियो का कमरा है।

यहां पर बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं।

हमें इस तस्वीर में एक मैदान देखने को मिल रहा है।

घास का रंग हरा है।

कमरे में एक शीशा लगा हुआ है।

कमरे में कुछ बच्चे नाच रहे हैं।

और पलंग बोहोत ही सुंदर लग रहे हैं।